उनके बराबर में कुछ कुर्सियां भी बिछी हुई है जिनके ऊपर कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं।

और अंदर की साइड कुछ सीसे भी लगे हुए हैं और दीवार पर कुछ पेंटिंग भी लगी हुई है।

यह एक नंबर गिन्नी है इसके अंदर बहुत अच्छे पर्दे भी लगे हुए हैं।

उस पहाड़ के अंदर एक गुफा भी है इस गुफा के बाहर एक आदमी--

यह एक पानी का बहुत बड़ा फवारा है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

जिनके ऊपर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं दीवार पर एक बोर्ड भी--